सामने की तरफ एक टावर लगा हुआ है।

सामने की तरफ बहुत कांच लगे हुए हैं।

इधर साइड एक बांस जैसा कुछ खड़ा हुआ है।

पीछे के साइड एक और सफेद कलर की कार खड़ी हुई है।

हमें इस फोटो में स्टडी रूम दिख रहा है।

बहुत सारे डिजाइन वाले झालरें लटकी हुई हैं।

दो कबूतर भी बैठे हुए हैं।

बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई हैं।

हमें इस फोटो में किसी पुल का नजारा दिखाई दे रहा है।

हमें इस फोटो में नहर जैसा कुछ लग रहा है।

सामने की तरफ एक गेट भी लगा हुआ है।

हमें इस फोटो में सामने की तरफ एक दुकान नजर आ रही है।

बिल्डिंग नजर आ रही है।

बहुत सारे गमले नजर आ रहे हैं।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

जिसका आगे का बोनेट ऊपर उठा हुआ है।

साइड का टायर खुला हुआ है।

ऊपर हरे कलर की नेट लगी हुई है।

इधर लाल कलर का डिब्बा रखा है।